ये यहां लेंटर की जाल बनने की तैयारी है।

यहां पर जो है सरिया बांधने का काम चल रहा है।

चारों तरफ घास लगा हुआ है।

सी स्कूल के बाहर का गार्डन नजर आ रहा है।

जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां कुछ व्यक्ति रोड पर चलते नजर आ रहे--

यहां नीचे मैट डालकर कुछ बच्चे जो है यहां पर ड्राइंग करते नजर आ रहे हैं।

और जो यह व्यक्ति है।

जिसमें एक व्यक्ति जो है तनकर खड़ा है।

एक व्यक्ति नहर के पास खड़ा हुआ है।